छड़ बिछाए हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे आदमी काम करते हुआ नजर आ रहें हैं। गिट्टी को मिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं।

बैंक बंद किया हुआ नजर आ रहा है।

यह कॉलेज है इसको पेंट किया गया है येलो कलर से ब्लू और रेड ।

अलग-अलग गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं साइकिल दिखाई दे रहें हैं।